एक बड़ा सा मैदान है जिस मैदान में कुछ मै टेंट लगा हुआ है और टेंट के अन्दर कोई खड़ा हुआ है।

एक होटल है और एक जमा हुआ है अगल बगल पेड़ पोधे है।

एक सामने बड़ी बिल्डिंग है और उसके सामने कुछ मैदान है जिसमे एक पन्नी लगा हुआ है और पन्नी के निचे कुछ चेयर बिछी हुई है एक ऑटो खड़ा हुआ है एक गाड़ी ख --

एक बड़ा सा चौधरी हॉस्पिटल है और बहुत सारे रूम्स है।

अगल-बगल दिवारे है ऊपर लाइटिंग कि गयी है और सामने एक टी.वी. है।

एक जिलाह उपाक्षण निवारण केंद्र है जिसमे जिसमे दिवार में लिखा है और उसके दिवार में एक एक पोस्टर और डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है।

एक रूम है जिसमें दीवारे में उस पोस्टर चप-चिपककी हुई है और--